उस पर एक वाइट कलर की बल्ब लगी हुई दिखाई दे रही है। नीचे की ओर शटर दिखाई दे रहां हैं।

पर्पल कलर का टेंट दिखाई दे रहा है अंदर की और बहुत सारी व्हाइट चेयर्स दिखाई दे रही है।

यहाँ हमें एक बस दिखाई दे रही है जोकि ब्लैक कलर की है इस बस पे --

येलो और व्हाइट कलर में है जिस पर बहोत सारे फ्लावर्स कलर कलर के रखे हुए हैं। रेड कलर का कॉर्पोरेट है। बहोत सारी व्हाइट सीढ़ियाँ लगी हुई है।

यहाँ हमें बहोत सारे टेबल्स और बहोत सारी चेयर्स दिखाई दे रही है।

और कलर कलरफुलस के लाइटस दिखाई दे रही है आगे की और शुभ विवाह करके बैनर्स दिखाई दे रहा है।

अंदर की और येलो और ऑरेंज कलर के फूलों की माला दिखाई दे रही है। आगे चेयर्स पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अम्म कलर की दिखाई दे रही है। आगे कि ओर बोहोत सारी ईटो की भट्टियां दिखाई दे रही हैं।

यहाँ हमें बहोत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी कूलर मशीन दिखाई दे रही है।

जिस पर व्हाइट और ऑरेंज कलर की ऐसी पट्टियां दिखाई दे रही है। नीचे की ओर लावर्स से मालाओं से।

आआ समूह में टेबल्स और चेयर्स दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर अंब्रेला अ अंब्रेला लगा हुआ है कलरफुल ।

यहां एक शॉप दिखाई दे रही है। जहां पर बोहोत सारे बॉटल्स में चॉकलेट्स दिखाई दे रही हैं।

साइड में व्हाइट कलर के दो अम्म टी शर्ट पहनी हुई दो आदमी बैठे हुए हैं और --